जगराते में बहोत सारे लोग आये हुए हैं।

एक आदमी फोटो खींच रहा है।

यह एक पत्थर की फोटो है।

और कंपनी बहोत ज्यादा खड़ा है।

तलाजु में तार रखी हुई है।

साथ में उसके एक पेट्रोल की टंकी भी जा रही है।

इस शॉप में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां बहोत ही सुंदर पर्स पड़े हुए हैं।

ट्रक में एक दो शीशे लगे हुए है।

चर्च के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है।

वेह उमर में थोड़ा बड़ा लग रहा है--

यह एक पप्पी शॉप की फोटो है।